ये एक मुझे शॉप दिख री है हेयर कटिंग की --

एक स्टेज पे बहुत सारे लड़की खड़ी है।

और बहुत बड़ी मार्केट लगती है।

और मास्क लगाया है सबने एण्ड हेलमेट्स पहने हैं फॉर दीयर सेफ़्टी ।

वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो उनकी पूजा कर रहे हैं या उनको डेकोरेट कर रहे हैं और ये ऐसा लगता है कि--